यह मोटरसाइकिल पर अंग्रेज भाषा में रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है।

जो अलग अलग आकार और रंग के है।

फूल के नीचे कई सारे पत्ते भी अलग अलग आकार में दिखाई देते हैं।

एक इमारत पीले रंग की और एक सफेदरंग की है।

इमारत के ठीक नीचे दो दुकाने भी हैं।

इस चित्र में हम बहुत सारे पेड़ पौधों को देख सकते हैं।

यहां पत्थर अलग अलग आकार के बड़े और छोटे भी हैं।

यहां पर हम एक दीवार देख सकते हैं।